रखी हुई दिख रही है।

यहां पर मुझे दो सफेद कलर की कुर्सियां दिख रही है।

और बहुत सुंदर दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे एक रोड दिख रही है।

रहे हैंऔर यहां पर--

और यहां पर लाइट्स भी लगी दिख रही--

यहां पर मुझे एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

लेडीज चलती हुई दिख रही--

घर से भी दिख रहे हैं।

जहां पर पोस्टर भी लगे हैं।

यहां पर मुझे शॉपिंग मॉल दिख रहा है।

लाइट्स भी लगी दिख रही है और यहां पंखा भी दिख रहा है और --

पहने हैंऔर यहां पर दो बुजुर्ग बैठे दिख रहे हैं जिन्होंने सफेद--

और पीछे यहां बहुत से पेड़--